पार्क के गेट के सामने दो खंभे जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसके उपर एक हेलोजन लाइट भी देखने को मिल रहा है।